पूल के बाहर छोटे-छोटे गमले मे पौधे लगे हुए है यहां पर रंग-बिरंगे फूल भी लगे हुए है।

विद्यालय है विद्यालय बहुत ही बड़ा और शानदार है विद्यालय की रोड पक्की बनी हुई है।

यह स्कूल के बाहर बहुत ही बड़ा एक मैदान है स्कूल का नाम इंडियन हाई स्कूल सहरसा है।

एक पुरानी इमारत है यह इमारत एक सरकारी इमारत है इस ईमारत में बाहर की और दो बाइके खड़ी हुई है।

बहुत ही गहरी और बहुत ही बड़ी नदी है नदी के किनारे कुछ हिस्सा जहाँ पर पानी नहीं आता है --

विद्यालय नीचे की तरफ बना हुआ है यह विद्यालय पुराना बना हुआ है।

यह विद्यालय के छत कि दीवारें नही हैं। इस विद्यालय का नाम रबिनंदन मिश्र स्मारक विधि महाविद्यालय सहरसा है।

इन नावें पर नाविक सवार हैं और कुछ लोग बैठकर इस नदी में घूमने का आनंद ले रहे हैं और खुश हो रहे --

मैदान हैं मैदान के किनारे-कनारे बोहोत बहु सारे पेड़-पौधे लग रहे हैं जो की बोहोत ही हरे-भरे और अच्छे सुंदर लग रहे हैं।

बच्चों का क्लासरूम है। जिसकी सजावट बोहोत ही खूबसूरत और बच्चों के पसंद के हिसाब से की गई है।